यहां पर एसी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा--

यहाँ पर बहुत सारे बलून भी दिखाइ दे रहे है यहाँ पर चेयर भी राखी हुई दिखाइ दे रही है।

यहाँ पर बहोत सारी लाइटिंग भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

गार्डन में बहुत सारी हरी घास भी दिखाई--